ये पिक्चर पे बहुत सारा बच्चा लोग दिखाई दे रहा है और दो तीन आदमी भी दिखाई दे रहा है।

और सामने भी एक रोड है बगल पर कुछ घर भी नजर--

गधों के पास सामने एक पत्थर भी है।

दुकान के बाहर बहोत सारे यूटेंसिस के सामान है बकेट जैसे कि कुछ पाइप पंखा रस्सी वैगैरा वैगैरा --

ऊपर एक बोर्डिंग है जिसमें लिखा हुआ है एस के सी एस डॉट के डॉट कंप्यूटर ।

दुकान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स नजर आ रहा है।

सामने में रोड नजर आ रहा है।